दुकान के पाछ में हमको एक टेड्डी दिखाई दे रहा हैं पुत्तला मतलब जो की लेहंगा पेहने हुए हैं लाल कलर का हैं गोल्डन कलर का हैं और बहुत सारे दराज में कपड़े रखे हुए हैं।

इस इमेज काफी खूबसूरत अच्छी दुकान दिखाई दे रही है इसमें कपड़े रखे हुए हैं कपड़े काले रंग के हैं नीले रंग के हैं उजाले रंग के हैं और पीले रंग के हैं।

यानको एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमे गणेश भगवान का चित्र बना है जो काफी खूबसूरत लग रहा है गणेश भगवान की चित्र पर माला डली हुई है।